इस दुकान के बाहर लिखा हुआ है विजय पुस्तक भंडार यह एक किताब की दुकान है इसमें बहोत सारे किताब रखे हुए हैं।

इस फोटो में बोहोत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं गुलाबी रंग का फूल भी खिला हुआ है पेड़ में।

यह एक एच_डी_एफ_सी बैंक का फोटो है।

एक मोटरसाइकिल खड़ी है कुछ लोग फिर रोड पे आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है आसमान में बादल लगा हुआ है।

इस फोटो में एक बड़ा सा सफेद रंग का टेबल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

काले रंग की टी_शर्ट पहन रखे हैं।

यह एक मंदिर का फोटो है इस मंदिर की सीढ़ियां लाल और नीले रंग की है।

मंदिर के बगल में एक दुकान भी है।

लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे स्पीड पोस्ट --

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहा है इस दुकान में एक छोटा सा बच्चा खड़ा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हवाई जहाज दिखाई दे रहा है जो की नीले और सफेद रंग का है।

यह एक स्विमिंग पूल का फोटो है इस स्विमिंग पूल में नीले रंग का पानी दिखाई दे रहा है।

और तीन बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं सफेद रंग के घर भी बने हुए --